मुझे यहां बालूरघाट हॉस्टल दिखाई दे रहा है।

गुमती में एक दुकानदार बैठा हुआ है।

मुझे यहां भुजिया दिखाई दे रहा है मुझे यहां फ्रिज भी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां एक कोच दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहां हॉफ पैंट दिखाई दे रहे हैं।

काला रंग का गेट दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां एक खिड़की पर--

रहा है मुझे यहां एक छपरी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां सब्जियां दिखाई दे रहा।

मुझे यहां बुद्धिस्ट लोग प्रे करते हुए नजर आ रहा है।

मुझे यहां पर एक दीवार दिखाई दे रहा है।

मुझे यह एक झंडा दिखाई दे रहा है मुझे जहां एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

मुझे यह एक रूम दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहां फ्लावर पॉट दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहां एक घड़ी दिखाई दे रहे है।